चीजे वस्तु मिलती है इस दुकान में।

यह एक क्लासरूम है जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए है तथा --

हॉस्पिटल का रूम है।

यह एक रेस्टो रेंट --

है यह रेस्टूरेंट है जिसमें बहुत विभिन्न प्रकार--

की क्लीनिक है जिसके बाहर बहुत--

सारे स्टेच्यू साड़ी पहना कर लगाए गए है एवं--

यह एक महालक्ष्मी ज्वेलर्स है।

जिस सोने एवं चांदी के कुछ आभूषण भी मिलते हैं एवं कुछ बर्तन भी इस दुकान में मिलते हैं।